और गंगा जी का पुल भी दिखाई दे रहा है और किनारे मेन मेड भी दिख रहीं हैं।

गंदा सा पानी भरा है। कूड़ा-करकट कुछ कूड़े कूड़े की जगह-जगह ढेरी लगीं हैं जिस एक ढेरी पर एक पंछी बैठा हुआ है और हरे हरे पेड़ --

बहुत बड़ी-स् बड़ा तालाब सा दिखाई दे रहा है जिसमें बगुले उड़ रहे हैं। कुछ बगुले बैठे हैं।